उस के बगल में लिखा बिग हॉस्पिटल --

बहुत सारे बैलून भी है रेड कलर के पर्दे भी लगे हुए है बहुत सारे चेयर्स भी हैं एंड सोफा भी है।

तीन यहाँ चार यहाँ पर लैपटॉप ही हैं ।

हुआ हैं जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर भी स रखे हुए हैं ।

स्पून के नाम से लगा हुआ हैं उसके बगल में एक बिजली का खंभा भी हैं और रोड भी बहोत सारा एक कार भी लगा हुआ हैं।

डेस्क पर वो लोग कुछ काम कर रहे हैं एक टे बेंच हैं जिस पर एक बैग रखा हुआ हैं।

जब बहुत सारे पेपर वगैरह केमिस्ट्री की लैब वगैरह हो रही हैं ।

यहाँ पर टूरिस्ट के आने-जाने की जगह है यहाँ पर बहोत सारे डेक्स बेंच लगे हुए हैं।

इसकारवन्स भी लगे हुए हैं ।

जाने का रास्ता भी हैं और कुछ दुकान टाइप की लगी हुई हैं ।

यहाँ पर एक लड़के बैडमिंटन खेल रहे हैं जहाँ पर चार लड़के हैं।

खिड़की भी लगी हुई हैऔर सब बैडमिंटन खेल रहे हैं।

और चार पॉली भी लगी हुई हैं ।

यह एक दुकान लग रहा हैं जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे बुक्स वगैरह भी मिलते हैं।

बर्तन रखी हुई हैं जिसके ऊपर--

मस्जिद में बैठकर पूजा आर्चना कर रहे हैं।

रे रेड कलर की मैट भी बिछी हुई हैं।

आधा पानी में डूब चुकी हैं जिसके अंदर एक पोड़ा रखा हुआ हैं जो कि--

पलक लिखा हुआ हैं उसपे उसके अगल बगल--

बगल में वाइट कलर का घर --

यह एक अंशवरी स्टेडियम लिखा हुआ हैं स्टेडियम हैं जो कि बहुत सुंदर हैं।

बाद में खड़े दिखाई दे रहे हैं उसके--

बाहर बहुत सारे फूलों की सजावट की गई हैं।

वह एक पेंटिंग हैं कि बहुत सुंदर लग रहा हैं उसके अगल बग--

का दुकान हैं जिसमें बहुत सारे मेकअप के प्र--

एक येल्लो कलर का घर हैं वहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हैं हैं।

एक औरत और दो लड़की हैं जिसका घर येल्लो कलर का हैं उसके बगल में स्विच बोर्ड हैं।

एक पर्पल कलर का पर्दा भी हैं ।

यह एक कमिशनर की ऑफिस हैं जहाँ पर बहुत सारे--

यहाँ पर एक पेंसिल कलर की कुंबस दिखाई दे रही हैं उसके उसकाम--

बस भी लगी हुई हैं उसके बगल में एक--

यह एक झरने की तस्वीर हैं।

जो कि बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं।

के अगल पक्कल कई सारे चट्टाने भी हैं।

साफ नजर आ रहा है जैशा कि मानो तस्वीर की रौनक बढ़ा रहा हो।

वहां दो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं।

एक मॉल की तशवीर ली गई है जहां पर बहुत सारे--

कपड़े लड़कियों के टंगे हुए हैं जहां पर--

जो कि बहुत सुंदर है उसके --

लिखा पोस्टर भी लगा हुआ है।

के बगल में कार वगैरा भी है।

टेनिस वगैरह को खरीद सकते हैं।

बहुत सुंदर लग रहा यहां पे टेरेस भी बहुत सारे हैं।

यहां पर इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इंडिपेंडेंस डे --

रबर बैंड --

और बहुत सारे अनेक प्रकार के शमान है जो पंद्रह परसेंट ऑफ --

इस फिगर को देखकर ऐसा लगा रहा--

बहुत सारे पेड़-पौधे हैं वहां पर बहुत सारे आदमी है।

इस हॉस्पिटल में बहुत सारे वर्कर्स भी हैं।

यह एक दुकान है जहा से बहुत सारी पूजा करने की सामग्रियां--

यहां पर एक जो की बहुत सुंदर दिख रहा--

यह फिगर पे आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे शिंगर --

एक सिंगर यहाँ पे वॉल्यूम है।

एक लड़का है और एक लरकी है ।

पर एक बगल में एक खुंदस है जिस पर लिखा हुआ --

से ऊपर बहुत सारे फूल वगैरह भी बने हुए हैं।

में बहुत सारे पेर है पौधे है।

ये आगे देखा जाए तो एक पानी का तालाब भी है।

रोड पर से ली गई तस्वीर है जिसके बाहर--

देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर जगह--

इस फिगर में देखा जाए तो यह एक--

जो कि एक बॉक्सिंग की जगह लग रही है वहां पर दोनों के बॉक्सिंग भी--

जहां से देखा वहां ग्रीन कलर का भी है।

बहुत सारे पेड़ भी हैं जो कि वातावरण को स्वच्छ बना रे है।

यहां पर एक ब्लू कलर की कार लगी हुई है।

यह एक एक्सरसाइज करने--

बहुत सारी कुर्सी लगी हुई याह--

यहां पर बहुत सारे पत्थर है जहां--

ऊपर साउंड वगैरह भी लगा हुआ है।

इस फिगर में देखने को यहां पर--

एक रूम है जिसमें डेस्क है वहां पर दो-तीन चेयर लगे हुए हैं।

इस फिगर में देखने के लिए है कि यहां पर--

बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं।

जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं यहां पर फूलों की कई सारी मालाएं टंगी हुई है जिसे आप कानों में पीन सकते--